उनके आसपास कुछ ग्रीन कलर के घास उगे हुए हैं।

एक शीशा का काउंटर दिख रहा है जहां पर बहुत सारे मिठाई रखे गए हैं।

काउंटर के ऊपर भी कुछ खाने का सामान रखा है।

जैसे कि इंजन ऑयल और दूसरे मेंटेनेंस प्रोडक्ट रखे गए हैं।

ये फोटो में मुझे बैडमिंटन वॉलीबॉल सफर ये सब दिख रही है जो रैक पर रखी गई है।

ये फोटो एक दुकान का है दुकान के ऊपर एक बैनर लगा हुआ है जो हिन्दी से लिखा गया है।

दूसरा व्यक्ति खड़ा है जो गुलाबी रंग के कपड़े पहना हुआ है।

यह फोटो में बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है जो सफेद रंग का है शायद स्कूल हो सकता है।

लेफ्ट साइड में कुछ पोस्टर भी चिपकाए गए हैं।

गेट के पीछे स्कूल बिल्डिंग दिख रही है जो ब्लू और वाइट कलर की है।

नीचे ग्रीन और रेड कारपेट लगे हुए है।

पीछे एक बड़ा सा स्क्रीन दिख रही है।

कुछ दूर एक एक और छोटी सी घर दिख रही है जिनका कलर ग्रीन है।

रिवर के दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ दिख रही हैं।

स्टोर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है और एक बाइक भी दिख रही है।

सड़क के उस पार दो बड़े बड़े बिल्डिंग भी दिख रही है।

एक काला कलर का प्लास्टिक चेयर भी दिख रहा है और नीचे बहुत सारे रेत भी है।

बिल्डिंग के बाहर दो बैनर दिख रही है।

यहां मुझे आठ टेबल और हर टेबल के साथ फोर रेड कुशन चेयर दिख रही है।

बाइक के ऊपर एक लाल कलर का हेलमेट भी रखा है।

वहां से एक लाल कलर का कार भी दिख रहा है।

फोटो में मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है।

कुछ व्यक्तियां भी दिख रही है जिन्होंने ब्लैक जैकेट ब्लू जैकेट रेड जैकेट ये सब पहना हुआ है।

टेबल के ऊपर प्लेट पर राइस और चिकन रखे गए हैं।

स्टील की गिलास भी दिख रही है कुछ प्लास्टिक चेयर भी दिख रही है जो ग्रीन कलर और रेड कलर पर है।